एवं कांच का गेट भी चढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छा पेंट किया हुआ है फर्नीचर भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं साफ सफाई भी बहुत अच्छी है।

यहां पर मुझे बहुत सारी पुस्तकें दिखाई दे रही है दुकान है व्हाइट कलर किया हुआ है बहुत ही अच्छी सुविधाएं हुई है।

है या फिर कोई धार्मिक स्थल है या फिर कोई मंदिर है दिखाई दे रहा है।

भव्य डिजाइन की हुई है मकानों के पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं बिजली की सुव--

पेपर दे रहे हैं किसी न किसी एग्जाम का पेपर दे रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे ढंग से पेपर दे रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट --

डिनर पार्टी यानि रात्रि के भोजन के जैसी कुछ मेज मेजस है जिस पर बैठते गप्पें मारते व्हाइट कलर किया हुआ है।

बहुड़ बड़ी संख्या में लोग एक जुट होकर इस खेल का आनंद उठा रहे हैं खेल को देख रहे हैं।

नाम भी है कुछ आस पास में घर दिखाई दे रही है छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी तक यहां देखने को मिलती है यहां पर घर भी है।

शीशे लगी हुई है घर के पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं अच्छी प्रकार से टाइल्स हुई है यहां पर बहुत ही अ --

यह एक यह एक प्राकृतिक चीज है इसे नदी कहते है पास में बहुत सारे लोग एक जुट हुए है।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

व्हाइट कलर की कार भी खड़ी दिखाई दे रही है घर के बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है एवं लाइट बत्तियां भी दिखाई दे रही है।

गाड़ी करने की जगह दिखाई दे रही जिसमें बहुत सारी गाड़ियां पार की गई है छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी तक--

यहां पर मुझे एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें सभी प्रकार के लेडिस पुरुष --

फूल लगे हुए हैं उनके हरियाली है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है पेड़ पौधों से पेड़ पौधे हमारे जीवन के रक्षक है।

गार्डन दिखाई दे रहा है एवं बहुत ही लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है इसे पथ भी कह सकते हैं हिंदी में पथ कहते हैं।